यहाँ पर मोटर साइकिल खड़ी हुई हैं ।

और अ खेत के अ बीचो बीच-बीच में वो मेर होती है वो भी दिखाई दे रही है।

छोटी-छोटी लाइटे है।